ये एक छोटा सा क्लिनिक है यहां पे एक बार डाक्टर है और एक मरीज है।

ये सभी हॉस्पिटल का कोई काम कर रहे हैं।

इसके आसपास में सड़क है और दो बाइक भी खड़ी है।

यहां पे पंडाल को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है जो काफी सुंदर लग रहा है।

और किरासन तेल का डब्बा भी रखा गया है।